एक मंदिर दिखाई दे रहा है जो की काठमांडू के अंदर का दृश्य है यह टेंपल

इसके बीच में एक स्तंभ भी बनाया है जिसकी पूजा धूमधाम से होती हैं।

यहाँ पर एक दुकान है नेट प्लेनेट --

कंप्यूटर लैपटॉप नजर आ रही है ये दुकान की अंदर --

और यह एक ड्राई क्लीन की दुकान है जहाँ पर ये व्यक्ति काम करते हुए नज़र आ रहे हैं।

यहाँ पर एक पारक के अंदर एक सटेडियम बनाया हुआ है पारक अभी खुला हुआ है यह दोपहर के समय का फोटो है.

कुछ गिलास रखे हुए नज़र आ रही है यह गिलास एक के ऊपर एक ही रखी गई है जिसे--